तालाब दिखाई दे रहा है। तालाब के बीच मे एक छोटा सा टापू सा बना देखा पिल्लर दिखाई दे रहा है। जिसके आसपास और बड़े रेल्वे ट्रॅक जैसे पिल्लर बने दिखाई दे रहे है।